तो यहाँ पे है एक झूला हमारे ज़माने में तो गोल-गोल वाला झूला हुआ करता था आज कल की तकनीक साला इतनी बड़ गयी है न यह देखो कैसा झूला है।

आगे पीछे भी घूमेगा गोल-गोल भी घूमेगा। वो बगल में फुलवे वाला पता नहीं का रखा है। उ जेल है का उमे बच्चो को बंद करदेते है अरे सही है आज कल के बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं भाई।

और उसके नीचे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मस्त ए_टी_एम है| पैसा वैसा निकालो बगल मे दवाई की दुकान है| दुका द दवाई जो है जाकर खरीद लो और देख रहे हो कित्ता सारा पोस्टर लगा हुआ है खाली - खाली ऐड्वर्टाइज़्मन्ट के लिए सब लगाया गया है |

भैया ये तो है लाइब्रेरी हैं। बच्चे मस्त एकदम पढ़ रहे हैं देख रहे है कितने पढ़ाकू बच्चे हैं भाई हमारे ज़माने में तो हम पढ़ ही नहीं पाते थे और ये जो चच्चा है चार कंप्यूटर लेके बैठे चच्चा काम तो एक ही कंप्यूटर से होगा बाकि दु कुर्सी खाली बैठे हो किसी को रखलो।

चिकन टिक्का समझने वाले लोगो को पहले तो ये बता दिया जाये कि चिकन टिक्का नहीं चिकन बर्रा है और बहुते लज़ीज़ होता है मतलब चिकन की तो हर वैरायटी ही लज़ीज़ होती है खैर --

और मस्त देख रहे हो पीछे कैसे कुर्सी कुर्सी लगा के बैठा है वैसे इस में ज्यादातर तो लोग कपले बैठ जाते है जाके अह् समझ रहे हो की नहीं। हा तो इसमें सब घूमते है पूरा पार्क वार्क देखतें है काहे की अपने चलने की मेहनत को बचाना रहता है चलने पे टैक्स भी तो लगा है।

वैसे इंडिया में कुछ दिखे न दिखे ये पोल तो दिखना निश्चित है मालूम कैसे चलेगा की हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। हैं और ये देखना सड़क पे मस्त पूरे जो बढ़िया से हैं मकान वकान बने हुए हैं | सड़क वाले लोग बड़े अमीर होते हैं भैया जिनका सड़क पे मकान--